इधर कोई ट्रक है अह येलो कलर की ट्रक है।

अ ऊपर नीचे जाते होंगे इससे लोग ना अ इलेक्ट्रिक वर्क्स करते होंगे जैसे तारों वारों को जोड़ते निकालते जोड़ते होंगे।

इस मकान की फोटो दी गई है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है इसकी फोटो दी गई है बड़ा खूबसूरत लग रहा है यह सामने--

ऐ ऐसे हिसाब किताब से मुझे तो गाँव लग रहा है क्योंकि साइकिल तो अभी के जमाने में कहीं पे होती नहीं है।

चीज बिकने के लिए रखी गई है तेल को घरेलू सामान को सब--

एक फोटो पे ना एक--

अच्छे साफ-सुथरी घर का फोटो दिया गया है होटल का फोटो दिया गया है जिसको अ शीशों से सजाया गया है इसका छत बड़ा खूबसूरत सा बनाया गया है।

सामने में एक खुली जगह की फोटो दी गई है ट्रक है कुछ आदमी लोग चढ़ रहे हैं दाएं बाएं से।

पानी वाली जगह की फोटो देखे हैं जहां पे आगे पीछे उधर इधर आइलैंड्स हैं।

बड़ी अच्छी बिल्डिंग लग रही है खुला आसमान है नीला गगन है।

तो अ प्ले पोट तो आजकल हर जगह चलता है जैसे की का जमाना जो ठहेरा--

की यह फोटो में बहुत सारे चिप्स टंगे हुए हैं अ कोल्डड्रिंक --

इधर करना बहोत अच्छा होता हैं नीले पीले हरे रंग सारे रंग।